यह एक भानु इको सर्विस सेंटर है। यहाँ पे दुगध डेरी से सबंधित परयोग होने वाला सभी सामान मिलता है। यहाँ पे --

डी.पी.ओ. इन सभी कम्पनी के मशीन रिपेयर की जाती है। यह दुकान काफी --

बोहोत सारे आदमी यहाँ पे नहाते धोते हैं।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

यह एक तालाब है। यह तालाब में दो हंस यहाँ पे पानी में तैर रहें हैं। यह तालाब में बोहोत ही पानी है। यह तालाब में मछली भी रहती है।